वह चददर वाला सेड है साइड में--

बड़े-बड़े पोस्टर्स लगे हुए है जिनमे कुछ पिक्चर बनी हुई है।

तान हैं कुछ बिच में पत्थर है पत्थर के साइड में घाँस लगी हुई है।

सामने कुछ बना है जिस पर काफी सारे पेड़ लगे है।

गॉवर्मेंट ई_आर_विस्वेस्वर्य_पोस्ट_ग्रेजुएट कॉलेज कोरबा लिखा हुआ है।